ब्राउन ब्लू और क्रीम कलर में बहोत सुंदर लग रहा है।

झरना बह रहा है और पीछे एक बहोत बड़ा पर्वत है।

यह चित्र एक व्हाईट कलर की धर्मशाला का है।

कांच का बना हुआ है अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं।

यहां बहुत सारे रखे हुए हैं।

सभी एक कोने में रखे गए हैं।

इस चित्र में एक रिसेप्शन एरिया दिखाया गया है।

उस काउंटर पर लिखा हुआ है मेय आई हेल्प यू ।

यह कुछ प्रोज मे रखे हुए हैं।

है और एक दरवाजा भी लगा हुआ है।

सुंदर लग रही है और बहोत बड़ी है।

इस चित्र में एक ब्लू कलर की मशीन दिखाई गई हैं।